परदे वगैरा स्कर्ट वगैरा रखा गया है।

उसके सामने एक बाइक भी खड़ी है इसके अगल-बगल में बहुत सारे पेड़ भी हैं।

ये दो बन्दे खड़े हुऐ हैं जो कि --

लड़के भी आये हुए हैं और यहाँ पर एक व्हाइट कलर का हाउस भी हैं।

ड्राइंग करने सीखा रहे है आर्ट्स वगेरा सीखा रहे है यहाँ साइड में लड़की गमले के पास बैठी हुई है |

एक डिज़ाइनर शेरवानी दो डिज़ाइन शेरवानी हैं इसके नीचे लाल मेट बिछाया गया हैं और बहोत ही अच्छा दिख रहा है।

बैठे हुए हैं और एक लड़की अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तैयारी कर रही है दूसरे बच्चे चेयर पे बैठे हुए हैं पीछे बैठे हुए--

वाइट कलर का दृश्य दिखाई देने को मिल रहा है।